नदी के किनारे यहाँ पेड़ दिखाई दे रहे है तथा नदी के अंदर इनका व्यू दिखाई दे रहे है आसमान --

तथा यहाँ कुछ दिखाई दे रहा है ये चार खम्भे दिखाई दे रहे है डेकोरेट हो रहे है इमें फुल दिखाई दे रहे हेएक चेयर दिखाई दे रही हैं जो खली हैं।

सीमेंट कलर के दिखाई दे रही है इसके आगे यहाँ कुछ लोग दिखाई दे रहे तथा यहां कई सारी मिट्टी के ढेर लगे दिखाई दे रहे है इटे पड़ी दिखाई दे रही खजूर से पेड़ दिखाई दे रहे एक जैसी --

ईटकी दीवारे दिखाई दे री है एश पे ग्रीन पेंट वो दिखाई दे रहा है बहार खली जगह दिखाई दे रहा है ।

जो कि रेड वाइट तथा ब्लैक और येलो दिखाई दे रहा है इसमें लाइटिंग भी देखी दे रही है।